और इसमें आईलवएचपि लिखा हुआ है और अ हरे कलर के घास दिखाई दे रहे है उस पे छोटे छोटे पत्थर डले हुए --

उसके बाहर बहुत सारे गमले लगे हुए हैं और उस बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है प्राथमिक भवन उसके बाहर एक बोर्ड भी लिखा हुआ है।

हरी घाँस लगी हुई है और कुछ लिए औरतें यहाँ पर बैठी हुई है और एक खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं | लाइट दिखाई दे रही --

यह मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। उसपे लिखा है गायत्री विद्यापीठ कन्या इंटर कॉलेज ।

इस इमेज मे मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है उसपे लिखा है बाणिज्यकरणन् भवन।

और बाहर काँच लगे हुए दिखाई दे रहे है। अंदर लाइटे जली हुई दिखाई --